और ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है भीतर जाने के लिए गेट लगा हुआ और ऊपर जंगले लगे हुए हैं।

नजारा देखने को मिल रहा है।

इस फोटो में यहाँ आगे एक बहोत बड़ी अस्पताल दिख रही है और बाजू में एक टैंकर रखा हुआ है।

इस फोटो में यहाँ एक खूबसूरत नदी देख रही है और आजू-बाजू में बहुत बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस फ़ोटो में यहां अस्पताल में बेड लगे हुए हैं। बाजू में मरीज सो रहे हैं। मरीज के बोटल लगी हुई है और --